और इसमें बड़े - बड़े टायर लगे हुए दिखाई दे रहे है हेडल हमें दिखाई दे रहा है।

और सामने एक शिखर बना हुआ दिखाई दे रहा है बड़ा-सा--

और सामने बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है बड़ी सी बिल्डिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।

और एक दिवार दिखाई दे रही आसपास और यहाँ पर बिजली के तार हमें दिखाई दे रहे है।

जहाँ पर हमें कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है नीचे व्यक्तिन दिखाई दे रहे है चलते हुए --

यहाँ पर हमें सामने रेल की पटरी दिखाई दे रही है और सामने में हमें एक रेलगाड़ी भी दिखाई दे रही है।

और एक भी रखी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।

यहाँ पे दिखाई दे रही है कपड़े यहाँ पे दिखाई दे रही शर्ट --